यहाँ आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे हैऔर बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और बिल्डिंग के ऊपर ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा है और उस पर कुछ नाम लिखा है।

चित्र में नीला आसमान दिखाई दे रहा है पड़े ह दिखाई दे रहे है और पेड़ की डहनिया नीचे ल लटकी हुई नज़र आ रही है।

एक अच्छा दिखाई दे रही है छत के नीचे पिलर लगे हुए हैं और पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के आजू-बाजू में काफी सारे गाड़िया आते हुए नजर आ रही है।

कुछ टेबल कुर्सियाँ है।

ओर टेबल के ऊपर कुछ पानी की बोतल है कुछ लोग बैठे हुए दिखाए दे रहे है ओर पिले फूल का बुक्के है धन्यवाद।